सामने की ओर एक हवेली बनी हुई है एक इंसान खड़ा हुआ है जोकि हवेली को देख रहा है।

सामने एक शोप है | यहाँ पर कई कस्टमर खड़े हुए हैं ।

नीचे फर्श सा बिछा हुआ है जो कि उसपे सितारे बने हुए है।